इस चित्र में एक शेर दिखाई दे रहा है बहुत सारी हरियाली हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक लड़का लेटा दिखाई दे रहा है एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है एक बैठा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारी कुर्सियां रखी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं.

इस चित्र में बहुत सारे इंसान बैठे दिखाई दे रहे हैं यहाँ एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है यहां एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक राशन की दुकान दिखाई दे रही है बाहर बहुत सारी बोरियों में राशन रखा दिखाई दे रहा है।

पत्थर पर बेटे तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहाँ एक खड़ा ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है यहाँ एक पक्की सड़क भी दिखाई दे रही है।